यह दृश्य बहोत मनोरंजन है यहां पर एक बड़ा सा तालाब गया हुआ है कुछ दूर।

इनमें से कुछ सोफा और कुछ बेड है और कुछ डाइनिंग सेट भी है।

टेबुल के ऊपर एक लैपटॉप लगाया गया है जहां पर ये दोनों व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप से जुड़ा हुआ।

यह एक बड़ा सा दुकान है जहां पर बहुत सारी चीजें बेचे जा रहे हैं।

जिसके ऊपर पानी वाला जग रखा गया है और जग के साइड नमक का डिब्बा रखा गया है।

और चार गाड़ियों में से दो स्कूटी और एक दो बाइक है।

सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं यहां पर एक पुतला खड़ा हुआ है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है वो शिक्षक है यह एक कॉलेज है।

सामने में एक छोटा सा तालाब है जिसके ऊपर एक बगुला बैठा हुआ है।

यहां पर नर्स और कंपाउंड मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे या देखभाल कर रहे--

पीछे कुछ आदमी सीमेंट को मिक्स करके लाकर आगे वाले आदमी को धरा रहे है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं ऑक्सीजन के लिए और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है।